ए एस यू जेड यू के आई सुजुकी --

और पेड़ दिखाई दे रहे हैं हरे घास दिखाई दे रहे हैं।

ये यहाँ पर खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं हरे-हरे घास दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा है।

उसके ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है एक औरत छपी हुई है उसमें।